और एक बड़ी सी लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ पर की अलग-अलग फूल से बनाई गयी मालाये टंगी गयी है।

और साइड में एक टोकरी में कुछ कमल के फूल पड़े हुए हैं।